गाइस ये एक स्टेज पर बड़े मिया परमॉर्मेस दे रहे है जिसमे इनके साथी पांच साथी पीछे खड़े हुए हैं |

गाइज ये फोटो बहुत अच्छा खिची गई है। इस बूगी में कई कलर कई तरह के भगवे कलर झंडे लगाए गए हैं और एक छत पर भी भगवा कलर के झंडा लगा हुआ है।

और इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और आप ही इसमें जुड़ा करे ताकि आपको भी मनोरंजन आये और इसमें चार घोड़े भी रखे हैं।

बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि कभी छक्का लगे या चौका लगे तो हम चिल्लाएं और मनोरंजन लें खेल का और इसके मैदान में एक पेड़ जहां पर लोग बैठे हुए करीब में हैं।